महिमा एंटरप्राइजेज नाम का लोगो दिखाई दे रहा है।

हां पर कबूतर इधर उधर दिखाई दे रहे--

में भगवान की भक्ति करते दिखाई दे रहे यहां पर पंखे भी दिखाई --

यह एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

यह एक कुर्सी और टेबल नजर आ रही--

यहाँ पर बच्चे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे --

नजर आ रहा है यहां पर वाइट कलर की बिल्डिंग --

बर्तन को ऊपर से नीचे तक सजाया गया है बर्तन गिलास वाले हैं।